शोरूम दिखाई दे रहा हैं जहां पे काफी सारे फूट वेयर्स नजर आ रहे हैं और वहां पर बैलून्स ऊपर मे लगाए गए हैं जिसमें येलो कलर किया ऑरेंज कलर किया ब्लू कलर किया हैं रेड कलर किया हैं।

और एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां पर फूल नजर आ रहा हैं इलेक्ट्रिक् वायर्स दिख रहे हैं।

जहाँ पर एक स्टेचू नजर आ रहा हैं कंपाउंड से सटा हुआ हैं और कंपाउंड मे जो है रेड कलर से दिख रहा हैंऔर इलेक्ट्रिक वायरस नजर आ रहे है।

और हरे पेड़ दिखाई दे रहे इलेक्ट्रिक पोल्स इलेक्ट्रिक वायर्स दिख रहे है। और--

काफी सारे बाइक्स वहां पर दिखाई दे रहे है और दिवार नजर आ रही है और कांच की विंडोज नज़र आ रही हैऔर इलेक्ट्रिकल वायर्स दिख रहे है।